यह घर बहुत ही बड़ी है। यह घर में बोहोत सारी ईटे लगे हुए है यह घर --

यह पहाड़ --

कपड़े की दूकान है एवम रासन की दूकान भी है। यहाँ पर --

एवं आलू बेंगन परवल की सब्जी बेच रहा है इस जगह पर।